ये आदमी सब कथि करे छै ठड़ा भाय के भूलने उलने कता जाय छै।

ऊ कथी छिये जंगल में पत्ता गिरलो छै।

फिर ये अस्टेशन छे बड़का स्टेशन इ कौन जगह क स्टेशन छे? फिर छे उ कथी छे? आदमी सब बेचय छै कनि| ट्रैन ख़राब लागे छै।

ये ये रोड में गाड़ी जय छे बहुत खतरनाक रास्ता छे कोई आव्से मली जसे --

नारियल के गाछ छिये साइड में बिजली जे फेर कलो के खुटा छै ऊपर में फिर एता आदमी जे बच्चा छै।

ई घर छे सीढ़ि वाला बड़का। इ छाज्जी ऊपर में फेन बिजली खंबा छे ई लाइट छे ई लोहार लागले छे बगली वगली --